लग रहा है और बहोत सारे--

और स्कूटी खड़ी है--

है और प्लेट में --

है और वो लकड़ी के डंडे लिए हुए--

यहां पर एक बड़ासा रूम --

लगी है और टेबल पे--

बहुत सारी बड़ी खिड़कियों--

है और बहुत सारे गमले पौधे के रखे हैं।

पैदा कर रहा है और बहुत सारे--

बहुत सारे ज्वेलरी ओल्ट रखा है।

पीछे एक बकेट रखा है और--

बहुत सारे पेड़ और हरे हरे।

फैन लगे हैं।

एक बड़ा सा टाइम है।

बना है और बहुत सारे--

और बहोत सारे बाइक और इस्कुटी खड़ी है और --

एक कैफे है और बाहर कैफे का नाम मेरा--

और जंगल दिख रहा है।

यहाँ पर सामने एक बड़ी सी--

कार या ऑटो खड़ी है।

नदी दिख रही है और--